के वगैरा यहां पे (पर) रखे हुए हैं बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं लाइटें वगैरा हैं यहां और मतलब बोरी वगैरा यहां रखी हुई हैं बहुत सारी और यहां पे (पर ) एक पट्टी जैसी भी है और बहुत सारा सामान है जो यहाँ रखा हुआ है।

और नीचे में बहुत सारा सामान बगेरा है दो बगेरा रखी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी महिलाये हैं जो बैठी हुई हैं |

और सीढ़ी वगैरह जो दिखाई दे रही है बहुत बड़ा जो पोस्टर दिखाई दे रहा है और र र ये नीचे दो कलर है --